यह दृश्य किसी शादी के समारोह का हैं ।

डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया हैं क्यूँकि वे हमारी --

एवम इन पेड़ के पतियों पर एक चिड़िया है। जो बोहोत ही शातिर एवम बोहोत ही ख़ूबसूरत है।

इस दृश्य में बादल है जो यह दर्शाते है कि बारिश होने वाली है यहाँ को मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा है ।

एवं मंदिर के पीछे पीपल का वृक्ष है।

इस चित्र में बैंक ऑफ बरोड़ा है। जिसकी अस्थपाना --